इस इमेज में हमें एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसका पानी गन्दा सा है और इसमें --

बहोत सारे हरे-भरे पेड़ पौधें हैं। यहां पर कोई भी व्यक् --

पेहना हुआ है और समय रा --

आ आ यहाँ पर बहुत सारी रंग बिरंगी लाइट्स हैं।

यहां पर लाइट का यूज किया हुआ है। यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर साइड में एक गेट लगा हुआ है जोकि बंद है।

इस नदी के साइड में बहुत सारे पत्थररररर लगे हुए हैं।

नहीं दे रहा है। यहां पर सजावट भी की हुई है।

इस इमेज में हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जहां पर --

यहां पर कुछ बाइक्स खड़ी हैं और जो इस इस स्कूल क्लासेस के अंदर हैं।

में बहोत सारी बाल्टियाँ और कुछ डब्बियां भी रखी हुई है ।

के हाथ पर प्लस्तर लगा हुआ है और दूसरा आदमी उस आदमी को मेडिसिंस दे रहा है।

बहोत अच्छे से की गई। ये देखने में बहोत ज्यादा टेस्टी लग रहा है। इसका कलर व्हाइट है।